गर्मियों के दिन में और इधर दूर-दूर मे इस मौसम सुहाना लग रहा है।

एक लड़का दिख रहा है जिसनें वाइट कलर की गंजी पेहन र --

झोपड़िया दिख रही है एक येलो कलर का मकान दिख रहा है।

कलर की बहुत सारी पोले दिख रही है जो --

और सामने एक येलो कलर का बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।

बाहर में ग्रिले लगी हुए है ब्लैक कलर के गेट लगे हुए --